यहाँ पर हमें बहुत ही सुंदर सा जो है फूलो का मार्केट दिख रहा है यहाँ पर बहुत ही सुंदर-सुंदर फूलों की दुकान है बहुत सारे फूलो के ढेर है यहाँ पर बहुत ही सुंदर फूलों की माला बनाकर टांगी गई है।

यहाँ हमें एक बहुत ही सुन्दर-सा और प्यारा-सा जो है पार्क दिखाई दे रहा है इसमें बीचों-बीच एक पार्क में पानी भरा गया है और बहोत ही सुन्दर लग रहा है।

यहाँ हमें कुछ घर दिखाई दे रहे है घर के सामने एक जो है पलंग खड़ा है।

पहाड़ आसमान को छूता हुआ बहुत ही सुंदर सा लग रहा है और ये बहुत उच्चा है।